इस फोटो में नदी दिखाई दे रही है चारों तरफ अँधेरा है कुछ पेड़ यहाँ लगे हुए हैं नदी के किनारे एक गाँव है जहाँ कुछ बिल्डिंग और घर दिखाई दे रहे हैं जहाँ लाइट लगी हुई है।

कुछ शीशे भी यहाँ लगाए गए हैं एक काउंटर यहाँ दिखाई दे रहा है एक स्टूल रखा है बाहर लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

इस फोटो में एक स्टोर दिखाई दे रहा है जहाँ प्लास्टिक के कुछ स्टूल रखे हुए है झाड़ू दिखाई दे रही है ऊपर एल.ई.डी. लाइट्स लगे हुए है और कुछ पंखे भी यहाँ लगे हुए है बहुत सारा सामान यहाँ पर रखा गया है।